इस इमेज मुझे एक घर दिखाई दे रहा है जो ब्लैक और वाइट कलर का है और मिटटी कलर का है जिसमे एक खिड़की दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और एक गेट दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और ऑरेंज कलर का है।

उसमे कुछ फ़ैने लगी हुई है जो ब्लैक कलर की है और एक कुर्सी दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर का है।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

और कुछ पिल्लरे दिखाई दे रहै है जो ग्रे कलर के है।

इस इमेज एक घर दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है और वाइट कलर का है।

इसमें बहोत सारे खिड़कियाँ दिखाई दे रही है और एक गेट दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मुझे एक हाथी का स्टेच्यू दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है ऑरेंज कलर का है और ग्रीन कलर का हैं।

इस इमेज में मुझे कुछ घरे दिखाई दे रही है जो पिंक कलर की है वाइट कलर की है और येलो कलर की है ब्लू कलर की है।